पीछे ये फूल मालाये टंगी हुई है। कुछ पेड़ दिख रहे है। कुछ लोग पीछे खड़े है।

एक के कान मे वाइट कलर का हैडफ़ोन है। कुछ वॉलपेपर दिवलो पे लगी हुए है।

कुछ लाइटिंगे लगी हुई है। दो पंखे लगे हुए है। कांच की खिड़किया बनी हुई है। एक वाइट कलर का टेबल दिख रहा है।

ये एक रोड की पिक नजर आ रही है जिसमें कुछ ऑटो स्टैंड पे लगे हुएं हैं कुछ कार्ड वाइट कलर की कार नजर आ रही है।

एक पेड़ दिख रहा है बट उसमें एक भी पत्ते नहीं है सुखी पेड़ है और एक पेड़ पीछे दिख --

ये एक जिम की पिक है जिसमे बैनर्स लगा हुआ है इस्पीड _फिटनेस लिखा हुआ है कुछ जिम की मसीन की समाने रखी हुई है ब्राउन कलर का --

यहाँ पे एक छोटी सी नदी नज़र आ रही है जहाँ पे दो बाइके खड़ी है। एक बाइक के ब्लैक एंड पर्पल कलर है।

कुछ कपड़े रेक पे जमाये हुए है। एक लड़की खड़ी है रेड कलर की टॉप में--